हरी-हरी घास दिख रही है बाउंड्री भी दिख रही है दोनों तरफ इस साइड साइड स्टैंड भी लगा हुआ दिख रहा है स्विमिंग पूल का आनंद लेने के लिए बच्चे जाते है स्विमिंग पूल में--